नीचे पहाड़ पे घर भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे घर भी दिखाई दे रहा है।

तीन बड़े बड़े बॉक्स भी दिखाई दे रहे हैं।

भी दिखाई दे रहे है।

पेड़ भी और कचरा भी दिखाई दे रहा है।

येलो कलर का भी दिखाई दे रहा है।

कैरेट में मछली भी दिखाइ दे रही है।

आदमी का पैर भी दिखाई दे रहा है।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

पीछे तस्वीर भी दिखाई दे रही हैं।

टेंट भी दिखाई दे रहा है।

बेल डिज़ाइन का बटन भी दिखाई दे रहा है।

पीछे बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

पत्थर में एक छोटा सा बोर्ड स्टीकर लगा हुआ--

मोबाइल भी दिखाई दे रहा है कैप भी दिखाई दे--

ढोलक भी दिखाई दे रहा है।

गिटार भी दिखाई दे रहे हैं।

पार्किंग लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

हाई स्कूल का गेट दिखाई दे रहा है।

इधर एक अलमारी भी दिखाई दे रही है।

छोटे छोटे गमले भी दिखाई दे रहे हैं।

यह है एक परफ्यूम शॉप है।

यह एक कमरा है। पानी की बोतलें भी दिखाई दे रही है। ठंडे की बोतलें भी दिखाई दे रही हैं।

स्कूटी और बाइक भी दिखाई दे रही है।

स्कूल में गमले भी दिखाई दे रहे हैं।

कुर्सी टेबल भी दिखाई दे रहे है।

नदी भी दिखाई दे रही है।

बड़े बड़े पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक कॉलेज है एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

ये घर है ग्रीन कलर का गेट भी दिखाई दे रहा है।

ब्लू कलर का टैंक भी दिखाई दे रहा है।

टोकरी भी दिखाई दे रही है बारकोड भी दिखाई दे रहा है।

औरत के हाथ में ग्रीन कलर का थैला भी दिखाई दे रहा है।

डेकोरेशन में सीढ़ी भी दिखाई दे रही है और लाइट भी दिखाई दे रही है।

आदमी भी दिखाई दे रहा है।

लकड़ी के बड़े बड़े डंडे भी दिखाई दे रहे हैं लोहे का सरिया भी दिखाई दे रहा है।

पीछे मकान भी दिखाई दे रहे हैं।